और इधर साइड में कुछ अ घर जैसे दिखाई दे रहा है कुछ बाइक लगे हुए हैं सामने में।

और रोड पे एक रिक्शा भी दिखाई दे रहा है | इधर व्हाइट कलर का भी एक घर दिख रहा है | वहाँ पे उसके पीछे में भी एक --

और एक आदमी का तस्वीर है ऊपर में और यहाँ पे दुकान के बाहर में कुछ बोरी में रखा हुआ कुछ सामान।

कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी लोग है यहाँ --